यूज़र रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के पाँचवे भाग में आपका स्वागत है
हम अपनी रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रक्रिया में कुछ अंशों और टुकड़ों को व्यवस्थित करेंगे
फिर हम एक पूर्ण जाँच करेंगे यह देखने के लिए यदि यह वाकई में कार्य कर रहा है
पिछले भाग में आपने देखा था कि मैंने खुद को डेटाबेस में रजिस्टर कर लिया था
सब कुछ ठीक सही किया था और मैं यहाँ लॉगिन स्क्रीन पर हूँ
देखते हैं यदि मैं लॉगिन कर सकता हूँ
लिखते हैं यूजरनेम एलेक्स है और मेरा पासवर्ड वह पासवर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया था
मैं देख सकता हूँ कि जब मैं लोगिन पर क्लिक करता हूँ फिर से इनकरेक्ट पासवर्ड
इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा यूज़रनेम नहीं मिला
मैं यूजरनेम में यह टाइप करता हूँ और मेरा पासवर्ड टाइप करता हूँ
यह दर्शाएगा थाट यूजर डोएसेंट exists किन्तु यहाँ यह दर्शा रहा है कि मेरा यूज़रनेम मौजूद है किन्तु मेरा पासवर्ड गलत है
अब मेरा पासवर्ड गलत होने का कारण है कि यहाँ मेरे साधारण पासवर्ड की तुलना मेरे डेटाबेस के अंदर मेरे md5 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से की जा रही है
हम यह इस प्रकार से करते हैं कि हम अपने लोगिन पेज पर वापस जाते हैं जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल यूजरलॉजिन ट्यूटोरियल में किया था
उस भाग में जहाँ हम अपने पासवर्ड्स की तुलना मेल खाने के लिए जाँचते हैं
यह यहाँ हमारा यूजरनेम जाँचता है और यह हमारा पासवर्ड जाँचता है
हमें हमारा पासवर्ड जाँचने की आवश्यकता है
अभी मानते हैं कि मैंने मेरा पासवर्ड टाइप किया स्लाइसर उ क 1
अतः यह पासवर्ड है जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ
यह काफी पुराना है
स्लाइसर उ क 1
ठीक है और यहाँ यह इस और इस पासवर्ड को स्लाइसरुक1 के बराबर जाँचता है
किन्तु यह पासवर्ड डीबीपासवर्ड के बराबर है
अतः हम तुलना नहीं कर पा रहे हैं
हमें यह तब चुनने की आवश्यकता होती है जब हम अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करते हैं
अतः अब यह वास्तव में इसके बराबर है अतः यह स्लाइसर उ क 1 एन्क्रिप्टेड है जोकि इस स्लाइसर उ क 1 के बराबर है
अतः हम अपने डेटाबेस में एक मद5 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड की एक एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से तुलना कर रहे हैं
मैं इस फॉर्म को फिर से जमा करता हूँ और लॉगिन
फिर से एरर
मैं फिर से कोशिश करता हूँ
लॉगिन पर क्लिक करता हूँ
नहीं यह कार्य नहीं कर रहा है
इसे जाँचते हैंpassword पोस्ट पासवर्ड के बराबर है अतः मद5 पासवर्ड है
मैं वापस जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ
मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ
ठीक है मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या समस्या है
यहाँ समस्या यह है कि हमारा मद5 पासवर्ड बिलकुल सही है किन्तु इसकी तुलना एक पासवर्ड से हो रही है जो हमारे डेटाबेस में कट के छोटा हो रहा है
ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम अपनी संरचना में जाते हैं और यहाँ अपने पासवर्ड फील्ड में जाते हैं और इसे बदलते हैं अभी हमारे पास लम्बाई की सीमा 25 है
अतः हम इसके लिए सीमा को बढ़ाकर 100 तक करते हैं
मैं पूर्ण सुनिश्चित नहीं हूँकि एक मद5 स्ट्रिंग कितनी लम्बी होती है किन्तु मैं लेंग्थ वैल्यू 100 लिखूँगा
इसे सेव करें
मैं मेरा टेबल ब्राउज़ करने जा रहा हूँ
फिर मैं वापस जाता हूँ और फिर से रजिस्टर करता हूँ
अतः रजिस्टर
अपना यूज़रनेम चुनिए
मानते हैं एलेक्स जैसा कि मैंने पहले कहा था
पासवर्ड चुनिए लिखते हैं स्लाइसर उ क 1
और मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा
यू हेव बीन रजिस्टर्ड
रिटर्न टो लोगिन पेज
अब चलिए अपना डेटाबेस फिर से जाँचते हैं
यह पहले से ही लम्बा दिख रहा है यह कटके छोटा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसकी लम्बाई बदल दी थी
अतः अब जब मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और मैं यह ठीक से टाइप करता हूँ
हम लॉगिन कर सकते हैं और हम अंदर हैं
ठीक है तो स्ट्रिंग की लम्बाई जैसी चीज़ों को जाँचिये
आशा है कि आपको यह समझ गया होगा
यदि आप चाहते हैं कि मैं इस ट्यूटोरियल को बढ़ाऊँ तो कृपया मुझे केवल अवगत कराएँ
और यह यूज़र रजिस्ट्रेशन है
यह हमारे यूज़र लॉगिन ट्यूटोरियल से आगे है
अतः इनको साथ में रखकर हमें पूरी तरह से कार्य करने वाला यूज़र रजिस्टर और लॉगिन प्रक्रिया प्राप्त हुआ है
मैं इसे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्यों में इस्तेमाल करूँगा
उदाहरणस्वरुप
मैं किसी पर एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ जो कि यूज़र लॉगिन और यूज़र रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल करता हो
अतः मैं इसे बहुत इस्तेमाल करूँगा
अतः अधिक जानकारी के लिए यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर मेरे प्रोजेक्ट्स देखिये
यदि आपके पास कोई प्रश्न है या मुझसे किसी भी चीज़ का विस्तार चाहते हैं कृपया मुझे केवल अवगत कराएँ
भविष्य में अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िये
देखने के लिए धन्यवाद
आय आय टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ